देख सकते है देख के लग रहा है की पार्क का साइड से लिए हुए है फोटो भी क्लिक किए हुए है।

देख सकते है यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छे से गांव दिखाई दे रहा है।

बहुत ही ऊपर से फोटो को क्लिक किए गए है।